नाव ब्राउन कलर की है। एक अंकल ने शर्ट ओर धोती पहनी हुई है।

चाय स्टोर है जिसमे इसमे चिप्स शैम्पू वागेरा बिस्कुट आदि समान है| यह रोहन चाय स्टोर रोहन चाय स्टोर कॉफ़ी के नाम से है--

ये एक कछुआ है जो बहोत बड़ा है इसके दो हाथ पैर बाहर निकले हुए है और एक मुँह भी निकला हुआ है।

जो स्टेज हैं वो बले जो स्टेज पे चेयर हैं वो व्हाइट ओर रेड हैं। यहा पर कुछ फ्लावर्स भी रखे हुए हैं।

यहाँ पे बाइक की सर्विस होती है। जहा पर एक अंकल अप एक आदमी की बाइक ठीक कर रहे हैं ओर यहा पे कुछ बोहोत सारा समान रखा हुआ है।

गली मोहल्ला है जहा पे कुछ मकान है। एक मकान थोड़ा बनने मे है और एक व्हाइट कलर का है और यहा पे किसी की बाइक खड़ी हुई है।

सामने गाड़ी खड़ी है यहा पे पेड़ है जिसकी परछाई नीचे आ रही है जिसकी रोड थोड़ी खुदी खुदड़ी सी है।